इस चित्र में किराने और सब्जी की दुकान दिख रही है इसमें प्याज लहसुन दिख रहा है बोरियों में बना हुआ दुकान पूरी खुली हुई है और अंदर --